यह एक नदी है यह नदी बहुत ही बड़ी तथा बहुत ही खूबसूरत है इस नदी के साइड में पत्थर भी लगाए गए हैं।

यह एक नदी है यह नदी बहुत ही बड़ी तथा बहुत ही खूबसूरत है इस नदी के ऊपर में बहुत ही खूबसूरत फूल बनाया गया है।

सबकी केक में से एक--

यहाँ पे सभी प्रकार की छोटी बड़ी गाड़ियां आती जाती रहती है इस कॉलोनी को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया भी जाता है।

इसे एक लोहै के पिंजरे में रखा गया है क्योंकि ये किसी इंसान को क्षती ना पहुंचाए--

यहाँ पे एक जाने के लिए और एक आने के लिए रास्ते बनाए गए है।

यह एक जिला व्यापक का उद्योग केंद्र है यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना प्रॉब्लम को लेके आते हैं।